स्टेज के ऊपर एक बहुते बड़ी सरिता दिखाई दे रही है।

ऑटो में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई--

इस फोटो में एक --

इस फोटो में एक हरे रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक सफेद रंग का सूट --

स्विमिंग पूल में कुछ बच्चे स्नान आदि--

प्लेट में बहुत ही अत--

इसमें एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है।

जिसमें से एक स्कूटी का रंग सफेद है।

और दूसरी स्कूटी का रंग काला है।

और नेट भी साढ़े पान सौ एमबी यूस हो चुकी है।

बड़ी सी एक किताब रखी हुई है।